यहाँ दूर पहाड़ दिख रहे हैं यहाँ दूर मकान दिख रहे हैं।

ये एक मेडिकल स्टोर दिख रहा है यहाँ कुछ मेडिसिन दिख रही है।

ये एक मैरिज हॉल दिख रहा है यहाँ डेकोरेशन दिख रहा है।

यहां बलून्स दिख रहे है यहां लाइटिंग दिख रही है यहां एक स्टैचू दिख रहा है यह एक शेड दिख रहा है।

ये एक विद्यालय दिख रहा है यहाँ कुछ विध-विधायक खड़े हुए है यहाँ कुछ बच्चे खड़े हुए है।

ये एक हॉल दिख रहा है ये पार्किंग हॉल दिख रहा है यहाँ कुछ गाड़ियाँ खड़ी हुई है यहाँ कुछ व्यक्ति बैठे हए है।

पेड़-पौधे दिख रहे है यहाँ पानी दिख रहा है यहाँ लोग नाहा रहे है।